जैसा की आप देख सकते है ये एक दुकान है जिसका नाम है बाटा बाटा बहुत ही बढियाँ कंपनी बड़ी कंपनी है इस कंपनी मे जुते बहुत ही बढियाँ-बढियाँ क्वालिटी के मिलते है बहुत ही गारेंटी के साथ --

आप जितना भी ले सकते हैं इस दुकान में यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ का डिस्काउंट भी दिया जाता है और यहाँ पे बहुत ही कम दामों में मिल --

जैसा की आप देख सकते है ये एक कपड़े की दूकान है जहाँ पे टी-शर्ट को जीन्स को एक पुतले को पहनाके रखाया गया है ।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पे ये एक वेटर लोग है जो की खाना परोस रहे है यहाँ पे बुफे सिस्टम चल रहा है वेटर अपनी-अपनी जगह पे खड़े है ।

जैसा की आप देख सकतें है ये एक न्यू शॉप है जो ओपनिंग हुई है और इस शॉप में बहुत सारे कस्टमर भी आए हुए हैं क्यूंकि ये नया शॉप ओपन हुआ है।

जैसे कि आप देख सकतें हैं यहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग हैं और सड़कें भी हैं यहाँ पे बहुत सारे टेम्पू भी हैं गाड़ियां भी हैं दुकाने भी हैं यहाँ पे यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है।

यहाँ पे लोग अपने-अपने घरों से जातें हैं कहीं उनको दूर जाना पड़ता है। तो वो ऑटो से जातें हैं और यहाँ पे लाइन पे ऑटो लगी हुई है।